उसके बाहर बहुत सारी रेता डली हुई दिखाई दे रही है एक आदमी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर पिलर डली हुई दिखाई दे रही है एक आदमी काम करते हुए दिखाई दे रहा है।

इस इमेज छवि में एक अस्पताल का गेट दरवाजा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर लिखा हुआ है डू दो नोट नहीं एंट्री प्रवेश ध तुमको ईधर रेड लाल लाइट रोशनी अस हम और अठारह अठारह एक्सरे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

तीन कार दिखाई दे रहे हैं कार में दिखाई दे रहा है और मोटर साइकिले दिखाई दे रही है और तार दिखाई दे रहा है।

इमेज में मुझे एक कैनरा बैंक दिखाई दे रही है।